यहां पे रेड कलर कार लगा हुआ है।

एक बच्चा भर का साइकिल है।

छोटे-छोटे बहुत सारे पेड़-पौधे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है क्योंकि --

यहां पे दुर्गा जी को व्हाइट कलर का साड़ी पेहनाया गया है।

इसके पीछे बैकग्राउंड बनाया गया जो रेड कलर का है।